कुछ भगवान की मूर्ति दिखाई दे रहीं हैं उसमें भगवान का चित्र बना हुआ है और उसके --

एक दुकान किराने की दुकान है उसमें मटेरियल बहुत सारा सामन रखा हुआ के कलर में चिप्स के पैकेट --

दिखाई दे रहा हैं ईट रखी हुई है वाइट कलर की पिंक कलर की बीच में से टू अ दिखाई दे रहा हैं |

एक गार्डन दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे सजावटे है में से डेकोरेट हो रहा है फ्लोवर्स दिख रहे हैं।

काले-काले बादल दिख रहें हैं जेंट्स बैठा हुआ है रेड कलर की कुर्सी पर फूल दिख रहें हैं पीले कलर रेड कलर हैं ऑरेंज कलर जामुनी कलर ।

बादल दिख रहे हैं ब्लैक कलर की कुछ लाइटें भी लगी हुई हैं कार खड़ी है बच्चो वाली खेलने की फर्श बिछी हुई है ग्रीन --

एक बैंक दिखाई दे रही है उस बैंक का नाम केनरा बैंक --

और ये ए.टी.एम. इसमें नीले कलर का व्हाइट कलर यैलो कलर से लिखा हुआ है बैंक के अंदर --

वाइट वाइट टाइप के थोड़े मठमेली ब्लैक कलर के पुरा पोत दे --

पोस्टर लगा हुआ है रेड कलर पिंक कलर कुछ लिखे हुए हैं।

गेट में लोहे की शटर है ऊपर बैनर लगा हुआ है जिसमें --

उसके पीछे पेड़-पौधे खड़े हुए हैं साइड में अभी पौधे हैं।

आसमानी कलर मंदिर में एए मम सामने गया है कुछ पौधे भी दिख रहे हैं।

एक कार्यालय दिख रहा है यह जो पिंक कलर से पोता हुआ है अर्धसैनिक --

मैरून कलर या ऑरेंज कलर की पेड़ पौधे खड़े हुए हैं हरे-भरे --

खड़ी हुई है बादल दिख रहे है आसमानी।

पानी दिख रहा है तालाब भरा हुआ है इधर मिट्टी दिख रही है।